साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम के लिए बोर्ड भी रखा हुवा है यहाँ पे बहुत सारे रकम के बोर्ड रखे हुवे है कुछ बार्बी के क्रिस्टल के जानवरों के परीओ के छोटे भीम के तरह-तरह के यहाँ पे बोर्ड रखे हुवे है।

यहाँ पे बहुत सारी ऑटो खड़ी है यहाँ पे एक लाइन से तीन ऑटो खड़ी है उस के पीछे बहुत सारी गाड़िया भी खड़ी है यहाँ पे यहाँ पे ऊपर से एक ब्रिज भी गई है ब्रिज सफेद रंग की है। नीचे उस के सफेद रंग के पिलर किए गए--

लो और एक ग्रे और एक ब्राउन पिलो रखा हुवा है इस रूम मे ऐ_सी भी लगा हुवा है इस से बड़े से एक झलने लगे --

आग लगाने वाले बोले हे की यहा पे दो रखे हुए है। घर मे तीन घर के बाहर तीन सीढ़िया बनाई गई है। कलर किए हुए पत्थर लगे हुए और--